सामने एक बड़ा सा मंदिर है जहाँ पर कुछ लोग बैठे है और कुछ लोग--

हवन भी जल रहा हैं और आगे की तरफ एक बड़ा सा बाउंड्री वाल वाला कुंड है जहाँ पर कुछ ट्रांसमिशन लाइने गई हुई है और पेड़-पौधे लगे हुए है।

सामने एक बहुत बड़ा रावण बनाया गया है जहाँ पर रावण के दस सिर दिखाई दे रहे है और उसे पिंक कलर का ड्रेस पहनाया गया है।

और येल्लो कलर का मुकुट भी पहनाया गया है और उसे लकड़ियो की सहायता से खड़ा किया गया है आस पास कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

सामने एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर कुछ लोहे के यंत्र रखे हुए हैं और आस पास कई सारे ट्रांसमिसन लाइने बिखरी हुई हैं जहाँ दो ब्लफ भी जले हुए हैं।

सामने एक बगीचा दिखाई दे रहा है जिसमे छोटे-छोटे हरे-हरे घास उगे हुए है और कई सारे पेड़ - पौधे भी आस पास दिखाई दे रहे है।